यहां सभी लोग खरीदने के लिए आते है इस दुकान वाले --

एक लेडिज ब्यूटी पार्लर है इस लेडिज ब्यूटी पार्लर में आईब्रो --

सभी भक्तगन पूजा करने के लिए आते है। यह मंदिर बोहोत ही बड़ा है। इस मंदिर में सभी लोग --